ये किसी भगवान का रथ निकल रहा है और लाइटिंग की गई है से भी लाइट आ रहा है।

और इसका मैदान बिल्कुल साफ है।

लाइटिंग का भी अच्छा इंतजाम किया गया है ऊपर साइड बना हुआ है।

ये तालाब है तालाब के सामने जाल बिछा हुआ है।

इलेक्ट्रिक का तार पूल से होते हुए गुजर रहा है।

एक बड़ा सा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसपे अभी काम चल ही रहा है।

एसपेसीयली इसका जो फ्रन्ट साइड है इसमें बहुत सारे अ लाइटिंग है बहुत सारी फोटो है।

नीचे मोटर साइकिल लगा हुआ है एक अ आदमी जाता हुआ दिख रहा है और सामने बोर्ड भी है बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन .

और पानी भरा हुआ है नदी है बड़ी और इसमें एक बड़ा आ पुल बना हुआ है।

और लाइटिंग की हुई है चर्च का जो कलर है व्हाइट है और बीच में एक रेड कलर का जल रहा --